जैसे की हम देख पा रहे हैं यह दृश्य किसी जिम का है| जिम के अंदर तरह-तरह की मशीने रखी गई है| जिम के अंदर एक बॉल है जिसका कलर नीला है।

उसकी दीवाल पर एक घड़ी टंगी हुई है| योगा क्लास के अंदर अनेक महिला योगा करते हुए नजर आ रही है।

जैसे के हम देख पा रहे हैं यह दृश्य किसी चर्च का है| चर्च के ऊपर नारंगी रंग लगाया गया है।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

जैसे की हम देख पा रहे है यह दृश्य किसी मैदान की है मैदान पर बच्चे खेल रहे है।

उस पुस्तकाल्य के अंदर एक महिला है| महिला अपने हाथों में चाय का कप लिए मुस्कुरा रही है| उसने काले कलर की ड्रेस पहने हुई है।

जिनका कलर नीला है दुकान के सामने एक मेट डाली हुई है उसका कलर नीला है| उसके ऊपर फिश रखी गयी है।

पेड़ों का रंग हरा है| पेड़ों के बाजू में एक लड़का खड़ा है जिसने लाल कलर की बैग अपने कंधे पे रखी हुई है।

उसको कर्मचारी उसके हाथो में चाबी थमाते हुए नज़र आ रहा है गाड़ी का रंग लाल है।

जैसे की हम देख पा रहे हैं ये दृश्य किसी तालाब का है।